रेलवे स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं।

पानी गड्ढे में भरा हुआ है जिसकी वजह से आसपास कीचड़ बड़ा हो रहा है।

लोग एक साथ मिलकर डांस प्रोग्राम कर रहे हैं जो रंग बिरंगे--

खड़ा है जिस पर हाथ में सफेद रंग की एक वस्तु है फैक्ट्री का गेट --

यह त्रिमूर्ति डेयरी एवम् प्रोविजनल स्टोर है।

पनीर मट्ठा आइसक्रीम आदि चीजें मिलती है यहां--

के बैठने के लिए बहोत सारी कुर्चियां लगाई गई है हॉल में लाल कलर के--

जिस पर एयरटेल और अन्य मोबाइल संबंधित रिचार्ज वोडाफोन के रिचार्ज --